यह एक पार्क है और इस पार्क में एक स्विमिंग पूल बनाया गया है और स्विमिंग पूल पे एक स्टेरिंग है यहाँ पर बच्चे लोग आकर बड़े लोग भी आके वहाँ से स्टेरिंग करके --

यहाँ पे एक अस्पताल है इस अस्पताल में डॉक्टर डी.न.पी. बैठते है जो की हड्डी रोग के विशेषज्ञ है और ट्रामा सेंटर भी है।

और यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी बैठते है और वो एम.बी.बी.एस. किये हुए है और एम.एस. ऑर्थो है वो भी डॉक्टर के ही --

इससे पता चलता है की सैलून कुछ ही दिन पहले इसे नया ओपन किया गया है यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाल काटा जाता है।

राइटर का बुक चाहिए और लेखक बुक चाहिए यहाँ पर उपलब्ध है। सब से बड़ी बात ये हैकी इस बुक का बुक का दुकान में चालीस परसेंट ऑफ देता है।